जहाँ पर एक बच्चा गा रहा है और यहाँ पर बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

ये एक बॉयज सैलून का अंदर का नज़ारा है यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठ हुआ है।

किसी का नजारा दिखाई दे रहा है आस-पास बड़े-बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं और यहाँ बग-बगीचे के किनारे बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं एक औरत दिखाई दे रही है।